इस इमेज में पिंजरे के अंदर तोता दिखाए गया है तोता के और साथ और भी पक्षी दिखाई गई है तोता--

इस इमेज में एक बिल्डिंग दिखाई गई हैबिल्डिंग के अंदर जाने का मुख्य दीवार दिखाया गया है।

ब्लू कलर से दवाखाना लिखा हुआ है जिसके सामने रेड कलर का एक स्टूल दिखा--

गाड़ी एक जैसी दिखाई गई हैस्टैंड पर लगी हुई दिखाई गईसड़क के किनारे दो बाइक एक साथ खड़ी दिखाई गई है।

एक बैग लड़का खड़ा हुआ दिखाया गया है जो अपने हाथ से पहाड़ को पकड़ते हुए दिखाया गया है।

में फर्नीचर लगा हुआ है जिसमें पैक सामान रखा हुआ है सभी फर्नीचर में पैकिंग सामान रखा --